सीढ़िया लगी है कुछ वृक्ष दिख रहे है ग्रीन कलर के और यहा हा कुछ लोग भी है और अ कुछ लोग है तीन चार --

और आस पास बहुत सारे वृक्ष खड़े हुए दिख रहे है और एक--अ शॉप सी दिख रही है जिनपे व्हाईट कलर का पेंट है और पानी भरा हुआ दिख रहा है।

सीमेंट कलर का और यहा कुछ पत्थर दिख रहे है।

पिक्चर में एक बिल्डिंग दिख रही है।

और एक डार्क बालू कलर का एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है और कुछ गमले दिख रहे है रखे हुए।

इस पिक्चर में एक आसमान दिख रहा है जो स्लेटी कलर का है और कुछ वृक्ष दिख रहे जो ग्रीन कलर के है।

और आसमान दिख रहा है वाइट कलर का और कुछ वृक्ष दिख रहे है के और यँहा पे व्हाईट कलर की लाइटे लगी हुई दिख रही है।